इस तस्वीर में मुझे एक बहुत बड़ा पहाड़ नजर आ रहा है।

ग्रीन कलर का गेट भी नज़र आ रहा है।

जान सा चलता हुआ नजर आ रहा है आस पास हरे भरे पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं।

एक आदमी ने माइक पकड़ा है और हारमोनियम बजा रहा है दूसरा आदमी ढोलक बजा रहा है और तीसरा आदमी सितार बजा रहा है।

यहां पे मुझे कुछ शेल्फ्स दिख रही हैं जिनके ऊपर प्लास्टिक का सामान रखा हुआ है कुछ पिंक कलर का है और कुछ स्काई ब्लू कलर का है।

यहां पे मुझे कुछ पिलर्स भी नजर आ रहे हैं और आस पास हरे भरे पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

इस तस्वीर में मुझे स्कूल की एक बहोत बड़ी बिल्डिंग दिखाई दे रही है।

इस तस्वीर में मुझे एक बहुत बड़ी बिल्डिंग नजर आ रही है जो ईटों से बनी हुई है इसके ऊपर मुझे दो ब्लैक कलर की टंकिया भी दिखाई दे रही है।

पोल नजर आ रहा है जहां पे बहोत सारी लाइट्स जली हुई है।

यहां पे मुझे कुछ लोग वोग चे कु कुर्सी टेबल के ऊपर बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं और कुछ लोग घूमते हुए भी नजर आ रहे हैं।

और कुछ लोग इन्हें देख रहे हैं आसपास मुझे और लोगों की शॉप भी नजर आ रही है।

जैसे मुझे छोटी छोटी चट्टाने भी नजर आ रही हैं और बड़े बड़े पेड़ भी रहे हैं।

और बच्चों के मु बच्चे के इसमें घूमते हुए दिखाई दे रहे है।

नजर आ रहे हैं और छोटी छोटी झाड़ियां भी दिखाई दे रही हैं।